यह तस्वीर में मुझे एक बड़ा सारा बिल्डिंग दिखाई दे रहा हैऔर बिल्डिंग का कलर मुझे ब्राउन दिखाई दे रहा है।